और यहां पे ऊपर साइड को रेलिंग भी लगी हुई हैं स्टील की----

और सामने से पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे है। और दूर दूर तक थोड़े पेड़ भी नजर आ रहे है। और सामने से आसमान भी नजर आ रहा है।

भी खड़ी है। नीचे शटर बनी हुई है और यहाँ सीधे सामने से रोड भी गया हुआ है।

और यहां पर मिर्ची रखी हुई हैं प्याज रखी हुई है भिंडी रखी हुई हैं।

--और पानी का जो कलर उसमें स्काई कलर और साइड में भी कुछ पेड़ हैं।

और टमाटर का हम खाने में यूज़ करते हैं। सब्जी बनाने में भी यूज़ करते हैं।

यहाँ पे सामने कार खड़ी हुई हैं जो बहुत सारी कार है जो वाइट कलर में ब्लैक कलर में हैं।